यहां एक मंदिर है एक लेडीज बैठी है टोपी ओढ़ो एक लड़का बैठा है कुर्सी पे--

यहां सफेद सी रंग की दीवा मंदिर भी है।

यहां एक अस्पताल है एक लड़का है छोटा सा जिसने बनियान पहन रखे है।

तीन चार कुर्सी धरी हुई है यहां पर--

छोटी छोटी पत्तियां भी पड़ी है धरती पर।

यहां पर उस्तरा है हाथ में।

यहां पर एक गेराज है गाड़ियों का यहां पर गाड़ी खड़ी हैं चार गाड़ियां हैं यहां पर।

एक औरत आ रही है।

एक बोर्ड भी लग हुआ है।

इस खिड़कियों ग्रिल भी लगी हुई है यहां पर।

ट्यूबवेल भी है जिसपे ये आदमी चल भी रहा है पानी पी रहा है ये आदमी।

यहां पर दो आदमी हैं नांव चला रहे हैं।

एक के हाथ में डंडा है।

लिली सी एक धोती है नांव में कुछ सामान धरा भी है एक डंडा धरा है।

मोटे मोटे भी हैं यहां पर यहां पर ईंट भी धरी है।

बहोत हरियाली हैं यहां पर एक खंभा भी है यहां पर यहां पर पेड़ भी है बहुत सारे।

टावर भी है यहां पर छतरी भी लगी हुई है एक डिश की।

दीवार भी है यहां पर खड़ी है।

एक लड़के के मुंह पे ब्लर हो रहा है यहां पर शीर्ष भूरी है।

चप्पल भी पड़ी हैं कुछ।

यह एक स्टूल धरा है नीले रंग का--

और बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पर ये स्टेज लगी हुई है।

एक औरत खड़ी है जिसके मुंह पे ब्लर है।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

यहां पर लैब का काम है। दो आदमी हैं जिनके मुंह पर ब्लर हो रहा हैं। यहां पर कंप्यूटर भी दर हुआ है। यहां पंखे भी लगे हुए हैं।

बन रही है बराबर में।

यहाँ पर एक गेट भी है जो खुला हुआ है। एक बंद है गेट यहां पर।

यहां एक बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है यहां एक टीन शेड भी है।

यहां पर एक कपड़ा भी है यहां पर--

यहां पर ट्रैक्टर का बहुत सारा सामान धरा हुआ है यहां पर एक सीढ़ी भी धरी हुई है।

यहां पर एक टैंक धरा हुआ है और एक सीढ़ी भी धरी हुई है यहाँ पर--